और दो पानी की बॉटल है मोबाइल रखी हुई है।

आगे की ओर खाली मैदान दिख रहा है बाहर की और बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं।

पीछे की और कुछ सफेद सा दिख रहा है ये ज्यादातर रंग इसके अंदर टेंट के पीले है एक पिंक है एक ग्रे है।

ऊपर की ओर लिखा गया है बस टर्मिनस --

और यहां पे एक आदमी भी खड़े है जो कुछ कर रहे हैं।

और इनका पीछे का बैकग्राउंड ग्रे कलर का है।

गार्डन दिख रहा है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं।

बाहर की और रेलिंग लगा है और बाहर की ओर भी झाड़ लगे हुए हैं।

यह एक रास्ता दिख रहा है जिसमें कुछ लोग चल रहे हैं।

एक अंकल साइकिल पर चल रहे हैं बाहर छोटी छोटी दुकानें लगाई गई है।

बाजू में बर्गर किंग का भी बोर्ड लगाया गया है नीचे दुकान के अंदर कुछ लोग हैं जो खरीदी कर रहे हैं।

कहीं जाने के लिए यहां पर बहोत सारी कुर्सियां रखी गई है।

ये एक बड़ा रूम है जहां पे बादामी रंग के बहोत सारे पंखे लटके हुए हैं।

पीछे की और पूरा गार्डन एरिया है साइड में कुछ लाल झाड़ और कुछ तुलसी पत्ते जैसे भी दिख रहे हैं।

मंदिर है जिसमें सामने की और भगवान की मूर्ति रखी गई है।

साइड की ओर एक आदमी खड़ा है यहां की ओर एक औरत बैठी हुई है ग्रीन कलर के दुपट्टे में।

और बहोत सारे बच्चे हैं उनकी टीचर्स हैं और बच्चों के सर पे सांता क्लास की टोपी है।

और घने घने जंगल के जैसे बड़े बड़े झाड़ है और ऊपर के ओर साफ आसमान दिख रहा है।

ऊपर की ओर छापरे पर टेरिस दिख रहा है जिसमें कुछ पिलर लगे हुए हैं।

यह एक पोस्ट ऑफिस है जिसका नाम है रिलायंस सब ग्रीन पोस्ट ऑफिस --

पोस्ट ऑफिस के बाहर साइकिलें खड़ी हुईं हैं बाहर की ओर झाड़ भी हैं साइड की और एक अंकल खड़े हैं।

ऊपर की ओर घर दिख रहा है जिसमें खिड़की खुली हुई है और परदे लगे हुए हैं।

सी गई है बाहर बहुत सारे झाड़ भी लगे हुए हैं।

बाजू में एक अ टेम्पो जैसा खड़ा हुआ है कुछ--

और गणेश जी की मूर्ति को रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया है।

और कुछ पानी की लहरें भी जा रही है।

और पानी के अंदर भी छोटे-छोटे पत्थर और घास जैसे दिख रहे हैं।

यह एक ग्राउंड है जिस ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं।

साइड की ओर बहोत सारे झाड़ है गार्डेंस हैं और छोटे छोटे गमले भी रखे गए हैं।

और सामने की ओर गार्डन है जिसमें डिजाइंस वाले ग्रास भी है।

गार्डन एरिया में कुछ डिजाइंस वाले झाड़ भी लगाए गए हैं छोटे छोटे पौधे भी है।

आदमी यहां कुछ खरीदी कर रहे हैं बार लाल कलर का डस्टबिन भी रखा गया है साइड की ओर भी एक कुछ दीवाल है रूम जैसा--

कबार्ड का रंग ब्राऊन साइड के ऊपर टेबल है।

इस साइड की ओर एक छपरा भी दिख रहा है जिसमें एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

साइड की ओर एक बैनर लगा है खजूरी वन करके बाजू में झाड़ है ऊपर बड़ा सा बैनर लगाया गया हुआ है।

सैमसंग एस मोबाइल यह दुकान के अंदर कुछ लोग --

खड़े हैं अंदर मोबाइल भी रखे गए हैं दुकान के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई है।

यहां कुछ रास्ते दिख रहे हैं दो और जाने के ऊपर की और कुछ छपरे जैसे दिख रहे हैं बहोत सारे पिलर भी बनाए गए हुए है।

हैं जिसमें कुछ लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं।

और पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में दिख रही है आगे की ओर रोड दिख रहा है रोड पर डिवाइडर भी है।

इसमें एक आदमी मिर्ची को बिन रहा है।

जो आदमी गिन रहा है उसका शर्ट नीला और सफेद चेक्स में है।